यहाँ पर एक बड़ा सा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत सारे हेलीकॉप्टर हैं वाइट कलर के हैं कुछ ब्लू कलर के भी दिख रहे हैं।

और सामने में कुछ बड़ा सा पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोहे का पाइप लगा हुआ है। घेरा हुआ है और यहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है। उसको माला पहनाया हुआ है।

कुछ पीले-पीले फूल लगे हुए भी दिख रहे हैं सामने में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ मिट्टी दिखाई दे रहा है।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

बहोत सारे लोग उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं| यहाँ पे एक बूढ़ा जाता हुआ दिख रहा है जो बैग पकड़ा है और सामने में बहोत सारी लाइट लगी हुई दिख रही है।